उसके पास में एक मकान बना हुआ है जो कि सफेद रंग का है।

ऊपर की तरफ टावर बना हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

दुकान पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी है।

उसके ऊपर एक छोटी सी मूर्ति बनी हुई है टावर के नीचे की तरफ तीन लोग खड़े हुए हैं।